यह एक मॉल है जिसके अंदर बहुत सारा लाइट लगा हुआ है बहुत सारा कपड़े हैं जिसमें साड़ी भी है आदमी भी खड़ा हो रखा है।

इसमें पीला कलर का भी रेस्टोरेंट के अंदर लाइट जला हुआ है।

साइड में नीचे सिशा का ग्लास भी लगा हुआ है जो गुलदस्ते बने हुए हैं।

नीले कलर का बादल छाए हुए हैं इसके साइड में पेर भी लगा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा नदी है जिसमें पानी भी बहुत सारा है पानी नीले कलर का दिख रहा है।

यह एक फूल का बगीचा है जिसमें फूल सारे रखे हुए हैं जिसमें फूल का कलर है रेड कलर है --

यह एक चंपारण हार्डवेयर है जिसमें छौर गिट्टी सीमेंट उसके बाद ये --

यह एक दुकान है दुकान का नाम है प्रताप कंपनीकेशन --

यहाँ पे ऑटो का काम किया जाता है प्याजो कंपनी का ऑफिस का --

यह एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है जिसमें बाजा भी मिलता हैं होम थिएटर बड़ा बेस साइड में ग्रील का भी रेलिंग लगा हुआ है जिसने लाइट मिलता हैं।

यहाँ एक सोरूम है जिसमें ट्रैक्टर मिलते हैं कल्टिवेटर कल्टिवेटर सब मिलते हैं ट्र --

यह एक दौड़ने का ग्रांड है ग्राउंड है जिसमें झंडा भी लगा हुआ है रेड ब्लू कलर का बहुत--

बैठा हुआ है दुर्गा जी का गणेश जी का मंदिर के नीचे सामान भी बिकते हैं पूजा करने वाले बहुत बड़ा --

लगा हुआ है बैठने के लिए बच्चे के खेलने के लिए उधर खिना भी रखा हुआ है।